इस तस्वीर मे हमे एक सिनेमा का जो हम्म दिखाया गया है जहा एक व्यक्ति दिखाई दे रहे है गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग बाल्कनी दिखाई दे रहा है खम्बा दिखाई दे रहा है तार दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे बहुत सी बाइक्स दिखाई दे रहा है दुकाने दिखाई दे रहा है रात का समय लग रहे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है खम्बा दिखाई दे रहा है तार दिखाई दे रहा है और सड़क दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हमे एक बहुत से बाइक दिखाए दे रहे है स्कूटी दिखाए दे रहा है बहुत से पोस्टर्स दिखाए दे रहे है बहुत से बिल्डिंग दिखाई दे रहे है ए _सी दिखाए दे रहा है गेट दिखाए दे रहा है।

इस तस्वीर मे हमे एकशॉप दिखाई दे रहा है। बहुत सी सीडी दिखाई दे रहे खंबा दिखाई दे रहा है लाइट्स दिखाई दे रहे है और बोर्ड दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमे एक पेट्रोल पम्प की तस्वीर दिखाई दे रही है। जहा अ बहुत से लोग दिखाई दे रहे है और रात में रात का समय है। लाइट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हमे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है कार दिखाई दे रहा है और बहुत से शेड दिखाई रहे है तार दिखाई दे रहा है सीढ़िया दिखाई दे रही है।